और उसके ऊपर में कुछ लिखा है निशुल्क--

उस जंगल के बीच में भोले बाबा के मूर्ति को बनाए हुए है।

और ऊपर में पत्ते सब को किए हुए नज़र आ रही है पीछे बहुत सारे मटकी को ऊपर में किए है।

यहाँ पे कुछ हो रहा हैं जैसे दिख रहे हैं डैनिंग टेबल कुर्सी को सजा के रखे हैं व्यक्ति लोग खड़े हुए हैं।